और एक रुमाल भी वहा चश्मा है वहा।

सिनेमा मॉल है कुछ अ बहुत सारे आद आदमी टिकिट के लिए लाइन पे खड़े हुए बहुत भीड़ बड़ा बुजुर्ग अह नहीं बहुत सारे बुजुर्ग है पे --

यहाँ शादी हो रही है एक लड़का लड़की अपने पोज दे रही है शादी की --

ये बहुत अच्छा मेला है और मेले के साम ठीक पास में एक दुकान है।

सुदा नाम का और बड़ासा बहुत बड़ी बिल्डिंग --

यहाँ बड़ा सा टेंपल है और आजूबाजू बहुत सारे दुकान ठफरीया --

यहां दो लड़के एक और दो कंप्यूटर है और यह कुछ अपनी पिक्चर अपलोड कर रहे है।

ही दिख रहा है न्यू ताज हेयर सलोन और यहाँ बहुत बड़ा --

एक बहुत ऑफिस है ऑफिस के बाहर एक आदमी झाड़ू लगा रहा है।

यहाँ टेम्पल है और बाहर भक्तों की भीड़ खड़ी हुई है ब आपके भगवान की दर्शन के लिए बहुत अच्छासा और आसपास बहुत हरियाली है बहुत अच्छे से।

यह बहुत बडा प्ले ग्राऊंड है और कुछ हरे हरे रंग के पेड है और कुछ ब बैठने के लीये बाग रहे वो--

बिल्डिंग है बिल्डिंग के आजूबाजू गेट है और काले रंग का गेट है काले रंग की बाइक उसे बिल्डिंग का नाम है।